जिम का आधा हिसा शीशे से कवर है और उसका ऊपर टीनशेड ब्लू और वाइट है।

यह एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां का व्यू है जहां नीचे की ढेर सारी दुकाने बन रही है।

दूर ग्रीन कलर की गेट दिख रहे हैंऔर एक दूर बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग के चारों तरफ बड़े-बड़े से पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक मेले का चित्र लग रहा है यहां पर बोट चलाई जाती हैं।

एक बड़ी सी शॉप है जिसके जिस मे जो सामान से पूरी भरी हुई है जिसका सामान बाहर तक रखा हुआ है।

इसमे एक लम्बी सी टेबल पड़ी हुई है जिसके चारो तरफ चेयर्स पड़ी हुई है और साइड मे एक अलमारी रखी हैऔर एक वाटर बॉटल --

हम्म शॉप के अन्दर बोहत ढेर सारा इलेक्ट्रीक सामान रखा हुआ है और वहां पर एक बड़ा सा रॉड जल रहा है शॉप के बहार भी कुछ सामान--

और उसके बाहर बहुत डेर सारे बाहर बास्केट रखी हुई हैं जो रेड ब्लू येल्लो ग्रीन कई तरीके की हैं ।

ये एक गार्डन का पिक हैं जहाँ पर साइड पे पत्थर रखे हुए हैं और नीचे एक पूल टाइप का बना हुआ हैं ।

ये एक जंगल का पिक है जिसमे झरना बह रहा है और जिसके चारों तरफ खाई है और बड़े-बड़े से पेड़ चारों तरफ लगे लगे हुए है।

एक पेट्रोल पम्प का व्यू यहा पर कई पेट्रोल भरने वाली टंकी लगी हुई है यहा पर एक कार खड़ी हुई है ।

उनमें सूरजमुखी के बहुत ढेर सारे पौधे लगे हुए है।